और कुछ रखा हुआ है वो नजर आ रहा है और सूखी घास है मल्टी है उसके ऊपर भी कुछ रखा हुआ और आसमान है।

यहां परस्टेचू है छे स्टेचू है जिसमे एक ढोलक बजा रहा है एक कुछ वांजित्र बजा रहा है एक वायोलीन बजा रहा है एक सीतारा बजा रहा है।

और अ पट्टी आस-पास बाउंड्री बनी हुई है बीच में पानी है जो ब्लू कलर --

टेबल है टेबल के आस-पास काफी सारी चेयर है।

बिल्डिंग है और धूप हो रही है और सामने की तरफ दीवाल नजर आ रही है एक दूसरी भी दीवाल है वो भी नजर आ रही है कार नजर आ रही है।

स्टैचू है जो कि हाथ ऐसे करके खड़े है और आसमान भी नजर आ रहा है और पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

और जिम है जिम में तीनों मशीन लगी हुई है।

जो की मिठाई है वह काँच में है काउंटर है और अ-अ नीचे की तरफ़ कुछ और नमकीन भी रखा हुआ है | मिठाइयाँ हैं चार तरह की।